पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं इसके आस पास कुछ घरे भी हैं पार्क में एक महिला--

कुर्सी पे लोग बैठकर डिनर करते हुए नजर आ रहे हैं सामने से खाना लेकर आ रहे हैं।

सारे लोग मिलकर यहां घर को बनाते हुए न--

हुए हैं और चारों तरफ गिट्टी बालू रखा हुआ--

यहां पर कूलर फ्रिज वाशिंग मशीन आयरन --

और ये राखी को अपने भाई की क--

करवा रहा है ये वाइट कलर का बड़ा ये वाइट कलर का है लड़का छोटा है।